व्यक्ति ने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और काले रंग की जींस पहनी हुई है।

उसके ऊपर एक पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है यहां पर फर्स्ट टाइल्स से बना हुआ है।

यह दृश्य किसी खुले मैदान का दृश्य है।

सामने के तरफ कई सारे रेंजर और सुपर बाइक दिखाई दे रहे हैं।

उसके नीचे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है जे_ई मेडिकल नीट पटना फिर उसके नीचे फिर एक व्यक्ति का भी का फोटो है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी है जिसपे लिखा है फिजिक्स वाला।

नीचे की तरफ हमें जमीन दिखाई दे रहा है जो बालू से बना हुआ है।

एक व्यक्ति कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर फूल से डेकोरेशन कर रहा है।

ऊपर के तरफ लड़ियां से डेकोरेशन किए गए हैं।

एक पिलर दिखाई दे रहा है पिलर लाल रंग का है।

पिलर के सबसे ऊपरी चोटी पर सोने से स्तंभ बना हुआ है।

यह डैम के दो दरवाजे खुले हुए हैं उससे बहोत स्पीड में पानी पास हो रहा है।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के बाहर शीशे से कवर किया गया ह--

उसके ऊपर एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जिसके छत पर ग्रिल किया हुआ है।

पिकअप उजले रंग का है पिकअप के बगल में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस से चयन लिखा हुआ है।

इस दृश्य में नदी का किनारा दिखाया जा रहा है।

सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो वे साड़ी पहनी है और अपने सर पे टोपी रखा हुआ है।

साथ में तीन गाड़ियां रखी हुई है गाड़ी तीनों गाड़ी उजले रंग की--

बाउंड्री के बीच में एक गेट काले रंग का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दूर की तरफ हमें एक लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्डन रंग का और एक कुर्सी रखे हुए दिखाई दे रही है।

यहाँ यह रात का समय है यहां पर हमे कई सारे--

बोर्ड पर लिखा हुआ एम साता राम नन्द लाल बर्तन दुकान यह बर्तन दुकान का दृश्य है।

बोर्ड के अंदर कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं नीचे की तरफ बहुत सारे टेबल बने हुए हैं जीसके अंदर बहुत सारे मशीन रखी हुई है।

यह दृश्य किसी दुकान के अंदर का दृश्य है उसमें बहुत सारे कबोर्ड बने हुए हैं।

यह दृश्य किसी ऑफिस का दृश्य है यहां पर बहुत सारे टेबल रखे हुए टेबल पर कई सारे सामान रखे हुए है।